इस चित्र में दो मूर्तियां दिखाई दे रही हैं यहां एक औरत दिखाई दे रही है।

इस चित्र में पियानो दिखाई दे रहा है।

इस चित्र में बहोत सारी औरतें दिखाई दे रही है यहां एक डलियां भी दिखाई दे रही है।

इस चित्र में एक बड़ी कार दिखाई दे रही है तीन एक्टिवा दिखाई दे रही हैं तीन आदमी दिखाई दे रहे हैं।

इस चित्र में दो का दिखाई दे रही हैं यहां एक बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

इस चित्र में एक बड़ा अअ रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है जहां बहुत सारी तस्वीरें दिखाई दे रही हैं।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

इस चित्र में एक बड़ी आइसक्रीम की दुकान दिखाई दे रही है यहाँ बहुत सारे बैलून दिखाई दे रहे हैं।

इस चित्र में बहुत सारे इंसान दिखाई दे रहे हैं एक ट्रैक्टर दिखाई दे रहा है बहुत सारी बोरियां दिखाई दे रही हैं।